और गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है आसमान है जो गाढ़ा ब्लू और आसमानी रंग का दिख रहा है।

और नीचे हाफ पैंट पहना हुआ है जो आसमानी रंग का है ऊपर में गमछा लगाया हुआ है और कढ़ाई में मसाला डाल रहा है जो नीचे छत में डाल रहा है।

और इसमें बहोत सारे जलेबी है जो कुछ टूटे हुए भी जलेबी दिखाई दे रहै है कुछ गोल - गोल कुछ बड़े कुछ मीडियम साइज़ के जलेबी --

और ग्रीन कलर में लिखा हुआ है और बैनर दिख रहा है एक जो सिग्नेचर का सीन है जो येलो कलर में है और रेड और व्हाइट कलर का है।

दिख रहा है जो काले रंग का है और दीवार है जो दिख रहा है स्कूटी है जो बाहर है।

इस इमेज में मुझे एक घर दिख रहा है जो हल्के पीले रंग का दिख रहा है एक बैनर लगा हुआ है जो ब्लू रंग का लगा हुआ है इसमें कुछ लिखा हुआ है।

जो ग्रीन कलर का है इसके ऊपर कपड़ा पसारा गया है जो कुछ कपड़े है और एक गाड़ी है जो ग्रे कलर का है और एक और गाड़ी है जो पीछे से है।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

मार्सल आर्ट की कुछ कृति कर रहे है। ऊपर एक काले रंग का पंखा है।

एक औरत है जो आगे में सूट पहनी हुई है पीछे टॉप जीन्स पहनी हुई है कुर्ती पहनी हुई है जो पीले रंग का पहनी हुई कुछ आदमी भी है जो पीछे खड़े है।

और मैदान है जो छोटे-छोटे घास का मैदान बना हुआ है एक एंगल है जो ग्रे और ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

एक औरत है जो दूल्हा के पीछे खड़ी है एक औरत है जो बाल खजवां रही है।

झंडा है जो दिख रहा है लाल रंग का दिखाई दे रहा है एक छोटा सा और घर है जिसका छत का रंग --

जो कुछ सामान रखे गए है कलर रखे गए है एक लड़का है जो चेक - चेक शर्ट पहने हुए है जो खड़ा है दो और लड़का है।

जिसके ऊपर कपड़ा बांधा गया है नीचे में दीप जल रहा है एक औरत है जो बैगनी कलर का कपड़ा पहिनकर माथा में पल्लू लेकर दीप जला रही है।